यहाँ मुझे लोग भी दिख रहे हैं मुझे बस भी दिख रही हैं मुझे आदमी दिख रहे है मुझे बहुत सारी बिल्डिंग भी दिख रही है मुझे शटर भी दिख रही है मुझे--

नज़र आ रही हैं और मुझे पेडे भी नज़र आ रहे हैं और मुझे अअअ खिड़की भी नज़र आ रही हैं उसमे शीशा है और प्याज़ हरे गोबी नज़र आ रहे हैं और मुझे हरियाली नज़र आ--

पानी नीला है और नीला सफ़ेद क्या है वो कलर दिखाई दे रहा है हरियाली और बिल्डिंग भी दिखाई दे पायन भी दिखाई दे रहा है और पेड़ें भी दिखाई दे रहे हैं।

लाल मिटटी कलर पीला हरा ब्लैक कलर गुलाबी पीला हरा ए भी दिख रहा है बादल भी दिख रहा है कुछ पेड़ दिख रहे हैं हरियाली वो भी दिख रही हैं और--

और क्या एक पलेट भी देखाई दे रही है और ए टेबल भी देखाई दे रही है ये चा ये चम्मिस दो चम्मिस दिखाई दे रही है मुझे और ये पलेट ब्लैक कलर की --

ऊपर कुछ है वो भी दिखाई दे रहा है और मुझे और मिट्टी भी दिखाई दे रहे बादल भी दिखाई दिए पेड़े भी दिखाई दे रहे है खिड़की भी दिखाई दे रही और मुझे कुछ --

और फेविकोल क्या क्या है वो भी दिखाई वो भी दिखाई दे रहा है

खुलानाबी दिखाई दे रहे है और हमको इ बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है बहुत लाल हरा गुलाबी पीला काला और ऐ सबके सब दिखाई दे रहा है।